यहां मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे कुछ गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक कंप्यूटर सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे ये एक पेड़ दिखाई दे--